यहां पे बहोत सारी कुर्सियां पड़ी है।

और सफेद दीवाल है जिस पर लिखा हुआ है मरीनों वाटरपार्क ।

काली ढ़क्कन है और पीछे सफेद कलर की ग्रिल बनी हुई --

और औरते बैठी हुईं इसके पीछे आदमी बहोत सारे खड़े हुए हैं।

और एक बाइक है उसके पीछे हरे भरे पेड़ लगे हुए हैं बड़े बड़े से।

यह एक बस स्टेशन है जिसपे एक बस खड़ी है लाल और सफेद कलर की।

लिखे हुए है और यहां पे बहुत सारे आदमी चलते हुए जोकि देखा जा सकता है आदमियों को।

बहुत सारे लोग बैठे हुए जोकि--

बहोत सारा और पानी के बाहर तीन कछुए हैं।

में और सफेद कलर की छत है।

और एक आदमी बैठा हुआ है उधर कोने में --

यहाँ सफेद कलर की कुर्सी पे एक औरत बैठी हुई है।

और दो लड़के खड़े हुए है जिसमें एक लड़के ने अपने कंधे पर लाल कलर का बैग डाला हुआ है।

काले कलर की शर्ट पहनी है।

और सफेद कलर की लाइट लगी--

गमले में लगे हुए हैं कुछ पेड़।

एक फूलों की दुकान है।

एक बच्ची है जो पीले कलर की टी-शर्ट पहने हैं जो कि बैठी है।

बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं दो चार छह सात लोग हैं।

यह एक कॉपी किताबों की दुकान है।

और उधर एक पेड़ है हरा भरा--

यह एक कापी किताबो की दुकान है।

यहां पे एक फ्रिज रखी हुई है जो कि सबसे पीछे है।

काले कलर की है छोटी सी और एक तिरंगा लगा हुआ है।

मंदिर में एक पेड़ लगा हुआ है बहोत हरा भरा।

और जमीन में बहुत हरी भरी घास है।

इसके बाहर बहोत हरी भरी घास लगी हुई है।

उसके आगे बहोत बड़े बड़े से पेड़ लगे हुए हैं जो कि बहोत हरे भरे पेड़ हैं।

जो सफेद पीले नीले कलर का है।

और जिसपे लिखा है भारत पैट्रोलियम ।

यहां पे बहुत से लोग पेट्रोल डलवा रहे दो पहिया बाइक में।

और एक बड़ा सा पेट्रोल वाला ट्रक खड़ा है।

उसके आगे एक और कार खड़ी है।

छोटा सा बोर्ड बंधा हुआ है सफेद कलर का।